ये चित्र मा जी हम देख सक्दु की हम तें यखम एक खाली पक्की रोडा दिखेण लगीं जे का फुंडे मा जी हम तें एक ढुंगो का पुस्ता दिखेण लग्युं बणयूँ बड़ु।